ग्लैमर ग्लिटर नीचे कुछ लोग खड़े हैं दो बाइक्स रखी हैं एक साइकिल रखी है।

इसमें कुछ लो नज़र आ रहे हैं बेठने के लिए टेबल नज़र आ रही है।

इसमें एक होटल दिखाया गया है जिसका नाम होटल ग्रैंड एस.एम. नजर आ रहा है।

लोग बैठे हैं इसमें कुछ पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं कुछ हरियाली नज़र आ रही है।

इसका बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर बंधन बैंक लिखा हुआ है इसके पास में एक शटर नज़र आ रहा है एक रेलिंग नज़र आ रही है।

टंगा हुआ है किसी ने मास्क लगा रखा है कई सारे किताबें नज़र आ रही है ऊपर काफी सारे बल्ब हैं शेड्स लगे हुए हैं।

इसमें एक रूम दिखाया गया है जिसमें पलंग नज़र आ रहा है परदे दिखाई दे रहे है।

इसके नीचे काफी सारे लोग खड़े हैं इसके पास ही एक गाड़ी खड़ी है।